दो अदमी बाइक सवार पे जा रहें हैं ढ़ेर सारे साइकिल लगे हुए हैं और लग रहा हैं शायद एग्जाम वगैरा होने वाले हैं और इसमें सारे लोग --

चेहरे पे मुस्कान है सेल्फ़ी स्टेज पे फ़ोटो खिंचाने के बहोत सारे इसको शौक भी है।

गुब्बारे से पूरा एकदम खिला हुआ दी दिख रहा है सारे लोग खुशहाल हैं।

ये देखिए नारियल का पेड़ कितनी सुंदर है देखने को मिल रहा है हरा-भरा है।